कुछ लोग ठेहरे हुए हैं और कुछ बैठे हुए हैं और मेज भी नजर आ रहा है और गाड़ी भी दिखाई दे रही है।

इस चित्र के अंदर हमें आसमान नज़र आ रहा है। बादल नज़र आ रहे हैं और गाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं।

और नज़र आ रही है। लाइटे नज़र आ रही हैं। खंभा भी दिखाई दे रहा है।